ऑरेंज कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके बाहर लाइट लाइट से सजावट की हुई है।

ये एक मंदिर है जो काफी सुंदर लग रहा है। इस मंदिर के बाहर काफी सारी सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है। सीढ़ियों के पास बोहोत सारी चप्पल पड़ी हुई दिखाई दे रही है। मंदिर के बाहर एक स्टैंड लगा हुआ है जिसमें काफी सारे बड़े-बड़े घंटे लगे हुए दिखाई दे रहे है टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

स्टूल के सामने कुछ गेट बना हुआ है। गेट के पास कुछ साड़ियां टंगी हुई दिखाई दे रही हैं। साड़ियों के ऊपर फूलों से सजावट की हुई है।

बहुत बड़ी जगह है यहां पर छोटी-छोटी घसे दिखाई दे रही है यहाँ पर कुछ जली हुई घसे दिखाई दे रही है यहां पर बड़ा सा उम् टावर दिखाई दे रहा है टावर के पीछे कुछ घर दिखाई दे रहें हैं।

यहाँ से ये नजारा शाम का है जहां पर सूरज की रोशनी बहुत ही खूबसूरत लग रही है।

बोहोत बड़ा हॉल है जहां पर बोहोत सारी व्हाइट कलर की और रेड कलर की चेयर्स पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। सामने एक बड़ा सा टेबल दिखाई दे रहा है है जिसके ऊपर जिसके पास एक सोफ़ा लगा हुआ है। यहां पर बोहोत सारी लाइटिंग की हुई है। यहां पर रेड कलर का कार्पेट बिछा हुआ है।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

ये एक शादी हॉल है जहां पर उ खाने के स्टाल लगे हुए दिखाई ड़ रहे काफी सुन्दर लग रहे हैं | यहां पर काफी स्टील के अ उ डस्ट्बिन रखे हुए दिखाई दे रहे है | यहां पर ग्रीन कलर क-कारपेट बिछा हुआ --